ऑरेंज कलर से कुर्फी आइसक्रीम लिखा है। एक्टिव खड़ी नजर आ रही है।

बोर्ड लगा है बोर्ड पर हेडफोनस लिखा नजर आ रहा है कैमरे का--

बाइक खड़ी दिख रही है। बाइक रेड कलर की है।

ट्रेन नजर आ रही है।

पिक्चर में कुर्सी है टेबल है।

दिख रहे हैं बादल नजर आ रहे हैं।